जो देखने में खूबसूरत है और अच्छा लग रहा है यहां पे वाइट कलर का बगूला बैठा हुआ है जो कि समुद्र में से मछली खा रहा है जो देखने में अच्छा और खूबसूरत लग रहा है इसीलिए।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने काम प लगे हुए यहां पर ब्लैक कलर का कुछ रखा गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है।

इसके आसपास एक ग्रीन कलर का घर है जो देखने में और भी अच्छा लग रहा है।

जिसमें पेंटिंग रखा गया है यहां पे अलमारी पे वही ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ रखा गया है।

यहां पे स्पीकर को रखा गया है जो कि ग्रीन कलर का स्पीकर है ब्लैक कलर का है।

यह एक दुकान का फोटो है दुकान में बहुत सारे अलमारी है यहां पे पूजा करने वाले मंडप को बनाया गया है जो कि लकरी का है।

अलमारी में शीशा लगाया गया है यहां पे मशीन है जो कि वाइट कलर का है इसमें एक पंखा लगाया गया है।

जो देखने में अच्छा है यहां पे भोज बनाकर रखा गया है जो देखिए हंडी में --

जो देखने में खूबसूरत है यहाँ पे रेड कलर का आदमी है जो कि पानी भर रहा है यहां पे पानी टंकी रखा गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है क्योंकि --

जो कि वाइट कलर का है यहां पे दो फैन है जो कि वाइट कलर का दोनों फैन है।

जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है मंदिर के गेट पर कुछ लिखा गया है जो देखने में और भी अच्छा लग रहा है।

यह एक रोड का फोटो है रोड पे बहुत ही अच्छा एक मंदिर टाइप का घर बनाया गया जो देखने में खूबसूरत है रोड के ऊपर बहुत सारे तार को बिछाया गया है।

जो कि वाइट कलर का बोर्ड है जो देखने में खूबसूरत है यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर लगाया गया है।

यहाँ पे बहुत सारे क्रीम को रखा गया है यहाँ पे सजा कर रखा गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे ब्लू कलर का एक बैग दिख रहा है जो देखने में और भी अच्छा है यहाँ पे वाइट कलर का डीवा में --

शैंपू को रखा गया है जो कि क्लीनिक शैंपू है यहां पर बहुत सारे शैंपू को रखा गया है।

यहाँ पे बहुत सारे बंदूक है यहाँ पे एक इंसान खड़ा है यहाँ पे दो कुर्सी है कुर्सी पर एक तौलिया को बिछाया गया है जो कि तौलिया येलो कलर वाइट कलर का है।

यहां पे एक काउंटर है जो कि काउंटर वाइट कलर का है यहाँ पे हर प्रकार को बंदूक ओर छतरी काफी सजा कर रखा गया है।

जो कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं एक लेडीज है जो कि वाइट कलर का कुर्ती पहनी हुए ब्लैक कलर का पेट पहने हुआ है।

एक टी_वी को लगाया गया है एक अलमारी है दो चेयर है जो कि ब्राउन कलर का चेयर है ब्लैक कलर का चेयर है।

यहां पे बहुत सारे क्रीम को रखा गया है यहां पे एक ब्लैक कलर का दीवार पर कुछ तांगा गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा तरीका --

यह एक मिठाई के दुकान का फोटो है काउंटर में बहुत ही प्रकार के मिठाई को रखा गया है काउंटर पे एक दीवा में कुछ रखा गया है।

जो देखने में खूबसूरत है यहां पे तीन इंसान है जो कि एक इंसान जो कि ब्लैक कलर का शर्ट --

बी ई तीन सी उन्नासी जो कि देखने में खूबसूरत लग रहा है।

पिकप के बीचोंबीच एक इंसान खड़ा है जो कि बैठा हुआ है चेयर पर चेयर ब्लैक कलर का वाइट कलर का शर्ट पहने हुआ है इंसानियत के आगे पीछे बोहोत सारे पर पोधे --

यह एक फैक्ट्री का फोटो है फैक्ट्री में दो इंसान हैं यहाँ पे बहुत सारे मशीन को लगाया गया है।

इसके सामने दो बाइक को लगाया गया है इसके आगे पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे इसके आगे खेत खलियान है।